सामने मुझे पब्लिक कर रही लड़कियां दिख रही हैं छठ पूजा करते हुए --

डिजाईन बना हुआ है रेड कलर का है पीले रंग का हरा रंग का है पाइप से बना हुवा है नीचे पानी दिख रहा है उपर .

सामने एक टेबल दिख रहा है टेबल पे प्लेट हैं चम्मच हैं।

दो कोटोरी दिख रही है कोटोरी में लाल रंग की चटनी है एक में एक में पीले रंग का --

सामने ठेले दिख रहे है ठेले पे सन्तरा दिख रहा है अनार दिख रहा है सेब दिख रहा है मोसमी दिख रहा है केला दिख रहा हैं ।.

नीचे पन्नी दिख रही है ब्लू रंग की --

बिजली का तार दिख रहा है लोहा दिख रहा है अंदर टेबल दिख --

सामने मंदिर दिख रहा हैं मंदिर के उपर पीला रंग का पेंट दिख रहा हैं।

फ्लैग दिख रही है झंडा लगा हुआ है।